इसमें मशीन दिख रही है। लाइट जल रही है। कुर्सी दिख रही है।

इसमें पेड़ पौधे दिख रहे है। घास दिख रही हैं।